और यह देखिये एक किला नजर आ रहा है हमको और यह टूटने लगा है और देखिये यह पत्थर से बना --

और जहाँ पे ये देखो बाहर कई सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है और कई सारे लोग है और देख रहे है यहाँ पे ये --